इसमें कुछ लकड़ी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन टंगे हुए हैं।

जिसमें किसी खास उत्सव पर डेकोरेसन हुई हुई है।

जिसमें एक व्यक्ति अपने आर्म्स को मजबूत करने वाली मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा है।

जिसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

सामने दीवाल पर ब्रिटिश पुस्तक डिपॉट कंपटीशन बुक्स चिल्ड्रन बुक्स लिखा हुआ है।